ये जिम एक बड़ा -सा रूम है हाल है।

बड़ा -सा गार्डन है जिस गार्डन में मैदान जिसमे हरे घास जमे हुए हैं।

और एक पानी का डब्बा रखा हुआ है पीछे कुर्सीयां रखी हुई है टेबुल रखी हुई है और एक आदमी चे-कुर्सी पास खड़ा है।

जिम बेहाल है जिसमे जिम रखी हुई जिम मशीने ने रखी हुई है और अगल -बगल दीवारे है सामने खिड़कीया भी लगी हुई है।

एक और नाव और नाव के अगल-बगल भी कुछ आदमी लड़के खड़े हुए हैं एक और रास्ते में एक लड़का मास्क लगाए हुए जा रहा है एक लड़की भी खड़ी है बादल सफ--

एक पर--पर्दे लगे हुए हैं दरवाजे हैं और नीचे ए तीन लकड़ियाँ अ योगा कर रही है।

बड़ा सा तालाब है जिस तालाब में एक नाव खड़ा है जो एक दो लड़के--

एक रूम है जो पिंक कलर का पेंट पुता हुआ है अगल बगल परदे लगे हुए हैं।

फूलों के मालों का दूकान है जिन फूलों के मालों के दुकान में हर प्रकार के फूल के माले टंगे हुए है।

कॉफ़ी शॉप है जिस कॉफ़ी शोज शॉप के अंदर काउंटर के पास एक आदमी काला कलर का कपड़ा पहने खड़ा हुआ है और अगल- बगल दीवारें हैं।

सामने मस्जिद है जे मस्जिद के बाहर मैदान है जिस मैदान में एक लड़का छोटा सा कार चला रहा है उसके अगल बगल सभी लोग खड़े हुए हैं।